बड़ा जिस फील्ड में दो-चार बच्चे खेल रहे है।

और फील्ड के बगल में बहोत बड़ा-बड़ा मकान दिखाई दे रहा है और यहाँ पे धूप भी निकला हुआ है।

एक बहोत बड़ा टावर के जैसा बना हुआ है और यहां पे पेड़ तथा पोधे भी दिखाई दे रहे हैं |

टेंपो लगा हुआ है और एक फोर व्हीलर भी लगा हुआ है और यहाँ पे लाइट भी लगा हुआ है।

लड़के झंड़े लेकर खड़े हुए हैं बैठे --